और यहां पर एक काउंटर रखा हुआ है और उसके ऊपर दो बॉटल भी रखी हुई है।

यह एक स्कूल है और इसमें एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारी बजरी इंटे रेता पड़ा हुआ है।

और यहां पर टाॅयले लगी हुई है इनका कलर ब्लैक और गोल्डन है।

और वह एक ही स्टेयरिंग पर डगाई गई है और यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और पीछे व्हाइट कलर के टीन डले हुए हैं।

और नीचे रेड कलर की मेट बिछ रही है।

और यहां पर एक डस्टबिन में रखा हुआ है और पीछे बोहोत सारे पेड़ खड़े हैं।

और बराबर में एक चेयर भी रखी हुई है।

पीछे लोहे की ग्रिल लगी हुई है स्कूल में क्रीम कलर हो रहा है।

यहां पर बहुत सारी रेड कलर की कुर्सियां भी रखी हुई है उन पर व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह एक बोहोत ही सुंदर घर है उस पर ग्रीन कलर की हरी घास लगी हुई है।

यह एक क्रिश्चियन चर्च है। यहां पर बहुत सारे लेडिस और जेंट्स आए हुए हैं और वह एक पर्व मना रहे हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है इसको व्हाइट और ब्लू कलर के बैलून से डेकोरेट किया गया है।

और एक काउंटर भी रखा हुआ है उसे पर अशोक ट्रेडर्स लिखा हुआ है।

इस पर श्रीराम वैलनेस फार्मेसी लिखा हुआ है यहां पर नीले और पिंक कलर के गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और वहां पर सभी सामान लिखे हुए हैं जो यहां पर होते हैं।

और बहुत सारे व्यक्ति उसके पीछे खड़े हैं उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे सामान लटके हुए जैसे की चिप्स नमकीन आदि दिख रही हैं।

और पीछे बहुत सारी मोटरसाइकिले भी खड़ी हुई है।

यहां पर ब्लैक कलर की चेयर भी रखी हुई है।

और यहां एक एम_सी_वी लगी हुई है जो बिजली को कंट्रोल करती है।

छत पर व्हाइट कलर की लाइटे लग रही हुई है।

और यहां पर एक टीन भी डला हुआ है उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

जिन्होंने अलग अलग कलर की साड़ियां पहनी हुई है।

यह एक रोड है यहां पर एक ऑटो रिक्शा जा रहा है।

और छत पर वाइट कलर की लाइटे भी लगी हुई है।

को गोल्डन कलर में सीलिंग कर रखा है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और यहां पर छोटी छोटी है घास जमी हुई है।

यहां पर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

और चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।